और यहां पर बहोत सारे लोग आए हुए हैं यहां पर जो कि उसे बिल्डिंग्स को देख रहे हैं।

इसके ऊपर येलो कलर की एक नंबर प्लेट भी है जिससे पता चलता है यह भी रजिस्टर व्हीकल नहीं है।

तो ये इमेज एक मेडिकल कैंप की है जहां पर लोग अपने मेडिकल चेकअप कराने आए हैं।

और अपना अपना उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उनके सामने रखा--

और यहां ऊपर नीचे पूरी तरह टाइल्स लगी हुई है और ढेर सारी लाइट्स ऑन है।

ऑरेंज कलर का ओम लिखा हुआ है वहां पर यहां पर एक झंडा भी लगा हुआ है साइड में।

जिसके ऊपर टीन लगा हुआ है नीचे ढेर सारी टेबल्स रखी हुई है।

और ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है दो एक में सर्विस सेंटर लिखा हुआ और एक में तोमार ट्रैक्टर्स --

तो इस इमेज में झांकी देख सकते हैं जो की बहोत अच्छे तरह से सजाई हुई है।

तो इस ईमेज में हम एक वाटरपार्क देख सकते हैं जहां पर एक बोहोत बड़ा सा स्विमिंग पुल है।

और इस इमेज में हम एक ग्राउंड देख सकते है जहां पर बहुत सारी घास उगी हुई हैं।

यहां पर सामने मैनिक्विन भी रखा हुआ है जिसपे साड़ी सजाई गई है।

और एक कोने में वेटिंग मशीन भी यहां पर जिसको सब्जियों तोला जाएगा।

यहां पर एक डेक्सटॉप भी लगा हुआ है जिसमे सी_सी_टी_वी कैमरा शो कर रहे हैं।